जो लाल रंग के है और उसमें पौधे दिख रहे हैंऔर एक काले रंग का डस्टबीन दिखायी दे रहा हैऔर नीचे टाइल्स लगी हुई दिख रही है जो सफेद और लाल रंग की है।

इसमें हमे दरवाजे खिड़कियाँ भी लगे हुए दिख रहे है एक खिड़की के पास में एक कूलर लगा हुआ दिख रहा है और सामने हमे ईंटे पड़ी हुई दिख रही है और पीछे हमे बड़े बड़े पेड़ दिख रहे है।

पीछे हमे एक दुकान दिखाई दे रही है जिस में कांच के गेट लगे हुए दिखाई दे रहे है और सामने हमे सीढिया दिख रही है और एक रास्ता भी दिख रहा है।

फूल दिखाई दे रहा है नीले रंग का है और आस पास हमे पौधे दिखाई दे रहे है और पेड़ भी दिखाई दे रहा है पीछे नीले रंग का आसमान दिखाई दे रहा है।

इस इमेज हमें एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड में हमें घास लगी हुई और हमें बैठने के लिए एक बेंच दिखाई दे रही है।

जो सफ़ेद रंग की है सामने हमें एक ईमारत दिखाई दे रही है जो गुलाबी रंग की है और उसमें दिखाई दे रहा है पीछे हमें बॉउंड्री दिख रही है।

पीछे हमें खेत दिख रहे है इसमें हमें बड़े बड़े पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है वू हमें नील रंग का आसमान भी दिखाई दे रहा है।